यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहा है उस पहाड़ पर हल्के हल्के पेड़ लगे हुए हैं उस पहाड़ के नीचे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और इस इमेज में यहाँ पर बादल भी दिखाई दे रहा है।

एक बहोत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही जिसमे तीन फ्लोर है।

यह क्लास रूम है जिसमें बस बस सभी बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर ने बोर्ड पे लिखा हुआ लिख रहे हैं। यहाँ पर एक बॉटल ब्रेन्च पर नजर आ रही है। लोग बच्चों के बैग रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउन्ड बना हुआ है ग्राउन्ड के थोड़े दूर जाकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही-- इस ग्राउन्ड मे बहुत सारे बब-- लड़के खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं।

और हरियाली दिखाई दे रही है। हरियाली में कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई दे रही हैं और वो सूखी लकड़ियां पानी में दिखाई दे रहीं --

हएए और वो कवेली वाला मकान है उस मे के दोनों मकानों के बीच मे एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

रोड दिखाई दे रही है रोड के थोड़े दूर चल कर खेत दिखाई दे रही है जिसमे लगी हुई दिखाई दे रही है।